जेवर वगेरह पेहनी हुई पीछे मूर्ति हे फूलों से सजी हुई भी हे कुछ छोटे-छोटे गमले भी रखे हुए हैं।